जहाँ जीन्स की पैंट भी दिखाई दे रही है जीन्स का कलर ब्लू ब्लाक वाइट ऐसा दिखाई दे रहा है जर्किन का कलर रेड ब्लू ब्लैक दिखाई दे रहा है और कुछ कैप और फैन का भी लगा हुआ है।

दीवार के सामने बहुत सारे डंबल्स रखे हुए हैं और कुछ तीन रखे हुए हैं बैठने के लिए उस साइड

ग्राउन्ड का फोटो दिखाई दे रहा है जहाँ बैठने के लिए कुछ बेंच बनाए गए है।